ये एक गेरेज् है जिसमे आप देख सकतें हैं फोर व्हीलर का गेरेज् है इसमें कुछ भी साफ़ सुथरा मतलब सर्विसिंग आदि किया जाता है।

ये प्रेसर पैप दिया गया है इस से आप जो चक्का के अंदर न् अथी मट्टी-उट्टी रहे उसको साफ़ करने का है।

देख सकते हैं यहाँ पे जीम में जो बेहतरीन-बेहतरीन बॉडी बिल्डर और ये जो रहते हैं जिसका जितना सुन्दर कट्टिंग रहेगा --

ये डीजे है जो डीजे का सेटअप पूरा कितनी खूबसूरती से सेटअप किया गया है इसकी लाइटें देख सकते हैं आप लोग |

ये एस.बी.आई. का छोटा ब्रांच है। इससे पैसा निकासी कर सकते हैं जमा कर सकते हैं।

ये करेला होटल आप देख सकते हैं। इसमें आपको भेज जो जितने भी होते हैं भेज ही मिलेंगे नॉनवेज यहाँ पे नहीं मिलती है।